सीलिंग से बहुत सारी तारे लटकी हुई दिख रही है।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

यहां लोग खाने का आनंद ले रहे हैं।

आस पास बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

दीवार में एक ए_सी भी दिखाई दे रहा है।

इस जगह में बहोत सारे लोग घूमने के लिए आए हुए दिख रहे हैं।

यहां विभिन्न प्रकार की खाने पीने की सामाने दिखाई दे रही है।

तीन लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक पेड़ भी दिखाई दे रही है बिल्डिंग के पीछे बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं।

सजावट के लिए बैलून का इस्तेमाल किया गया है और भिन्न प्रकार की लाइटें भी दिख रही हैं।

कुछ लोग यहां पूजा पाठ कर रहे हैं।

यह किसी रेस्टोरेंट का दृश्य दिखाई दे रहा है।

अमने एक बेड का काम चल रहा है।

इसमें बहोत तरह की खाने की समान भी दिखाई पड़ रही है।

सामने एक काला कलर का खंबा भी दिखाई पड़ रहा है।

लोगों के हाथों में बैनर भी दिखाई दे रहा है।

यह एक बहोत बड़े हॉल का दृश्य दिखाई दे रहा है।

छतो में बहुत सारी छड़े भी नजर पड़ रही है ।

बहोत सारे पेड़ भी दिखाई पड़ रहे हैं।

यह किसी जगह का दृश्य दिखाई पड़ रहा है।

सामने एक सादे कलर की बिल्डिंग भी दिखाई पड़ रही है।

यहां एक लेडी स्पीच दे रही है।

लेडिस का कपड़े का रंग नीला कलर का दिखाई दे रहा है।

पीछे बिल्डिंग सादे कलर की दिखाई दे रही है।